सामने बहोत बड़ा उनका चौरंग रखा हुआ है पीछे काफी अच्छे से डेकोरेट किया है।

यह एक रोड की तस्वीर है जिसमे दो कार जा रही है जिसमे से एक कार येलो कलर की है और एक कार वाइट कलर की है और--

जस्ट ऊपर इसके ऊपर लाइट्स के कुछ कैबल गए हुए है।

बोहोत ही शांत और अद्भुत नज़ारा है ये --

आस-पास बहोत बड़े-बड़े घर बने हुए हैं और शायद देखने से लग रहा है किसी चीज की रिकॉर्डिंग्स --

अ बिल्डिंग के जस्ट नीचे कुछ मार्केट्स हैं जो कि वेजिटेबल्स या फ्लावर मार्केट है।

मेन डोर दरवाजा दिखाई दे रहा है आजू -बाजू काफी सारे पेड़- पौधे है ऊपर कुछ लाइट्स के बड़े -बड़े वायर्स हैं।

यहाँ हमें एक बोहत बड़ा सा जो है ओवर ब्रिज दिखाई दे रहा है जिसके--

और बहोत ही यहाँ पर बड़े-बड़े पेड़ पौधे हैं कुछ यहाँ आस-पास बिल्डिंग्स है बोहोत ही शांत अत और अच्छा माहौल है ।

व्हाइट कलर की बस हैं काफी सारे पैसेंजर्स हैं बड़े - बड़े पेड़ पौधे हैं एक हमें यहाँ पे --

डांस परफॉर्मेंस देती हुई लग रही है स्टिप्स कर रहै है डांस परफॉर्मेंस के बैक साइड में पीछे कुछ वाइट कलर्स के चेयर हैं।

बिल्डिंग के जस्ट साइड में कुछ सीढ़ियां है साइड में कोई छे एक हमे शॉप दिखाई दे रही है।

बिल्डिंग के नीचे मोस्टली हमे जो है काफी सारी दुकानें दिखाई दे रही है।

यहाँ पे हमे बोहोत बड़ा जो है पार्क दिखाई दे रहा है पार्क बोहोत ही बड़ा और साफ सुथरा है।

वेजिटेबल्स को देखकर ऐसा लग रहा है कि हम इन्हैं कुकिंग कर ले। कुछ यहाँ पर हमें--

डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स दिख रही हैं।